यहां हम देख सकते हैं कि यह एक ज्वैलरी की दुकान है।

इसमें सोफा लगा हुआ है सामने एक लकड़ी की अलमीरा जैसी खड़ी कर रखी है।

इसमें बच्चों के खेलने के खिलौने पड़े हुए हैं जैसे डॉल --

टेबल के ऊपर टिशू और सॉसेस वगैरह पड़ी हुई हम देख सकते हैं दीवारों पर टाइलें लगी हुई हैं।

कुछ करती हुई दिखाई दे रही है।

छोटा सा मेज हम यहां देख सकते हैं जिस पर कुछ सामान पड़ा हुआ है और यहां पर एक बड़ी सी फोटो भी--

यहां हम देख सकते हैं कि एक--

छत में ट्यूबलाइट लगी हुई है।

पीछे पहाड़ दिख रहा है और --

कई आदमी यहां पर एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक पेड़ यहां पर लगा हुआ देख सकते हैं।

वह इनमें ह पौधों को पाइप से--

एक अंदर टेबल पड़ा हुआ देख सकते हैं।